इस चित्र में हमे एक रेस्टोरेंट का चित्र दिखाया गया है जहां पर कुछ सोफे रखे हुए है जो को हरे रंग के है।

उन्होंने एक पिच बना रखी है जिसके ऊपर एक आदमी बैटिंग कर रहा है और एक आदमी बॉल फेंक रहा है।

इस चित्र में हमें एक प्लंबर की दुकान दिखाई गई है जहां पर तीन वॉश बेसिन रखे हुए हैं।

जहां पर एक सीढ़ी लगाई गई है और लकड़ी के कुछ अगल अलग ड्रॉअर बनाए गए है जिसके अंदर अलग अलग किताबे लगाई गई है।

एक बच्चा नदी की तरफ देख रहा है।

गुबार के अंदर कुछ काले रंग के अंगूर पड़े अंगूरों के गुंचे पड़े हुए हैं।